यल्लो है पीछे एक बॉउंड्री बनी हुई है इसमें एक चदर सेट घर बना हुआ है कुछ लकड़ी का बना हुआ रखा है पीछे पेड़ लगे हुए है लाईट जल रही हैं।

ये चर्च है जिसमे बोर्ड लगा हुआ है इस जगाह ऊपर दो लाईट लगी हुई है गेट बना हुआ है अंदर चर्च है।

यहा एक घर बन रहा है इस पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है इसका कलर वाईट है चार ओ--

बहुत सारे खंभे खड़े है ऊपर टिन शेट बना हुआ है।

इस पे खुच माला फुल पड़े हुए है पंखे लगे हुए है लाईट जल रही है कुछ सीलिंग फेन है परदे लगे हुए --

एक मंदिर है जिसमे भगवान की तीन मूर्तियां लगी हुई है इम इम्म भगवान ने माला पहन रखी है मंदिर को फूलो से सजाया गया है।

कोई भगवान के चरणों में फूल रखे हुए है भगवान के सर पे मुकुट लगा हुआ है।

हम्म यहा पे बहुत सारी बाईके खड़ी हुयी है एक रेड कलर की बाईक है एक नीले कलर की बाईक है हे दीवार का कलर भी रेड है इसपे बोर्ड लगा हुवा हैं।